और इस जाने के लिए अपनी बारी का वेट कर रहे हैं और कुछ बोट्स भी दिखाई दे रही है।

ओ कुछ वगैरह भी दिखाई दे रही हैं।

एक बोर्ड है बीपीएल --

पहचान करते हुए दिखाई दे रहे है और कुछ लोग सेल्फी लेते हुए प्रतीत हो रहे है।

ये एक गुंवद सा प्रतीत हो रहा है।

अअअ यह पेट्रोल पम्प सभी तरह की सुविधाओं भी --

जामुन बेचता हुआ दिखाई दे रहा --

इलेक्ट्रिसिटी चेक कर रहा है जिसमें जगह फॉल्ट --

और काफी ऊँची-ऊँची लहरे उठ --

दिखने में काफी सुन्दर दिखाई दे रही है।

यह एक राधाकृष्ण जी का मंदिर है यहाँ पर।